इस पर फिसलने वाला और बहुत तरह का चीज बनाया गया है बच्चों के खेलने के लिए वहां पर उसके ऊपर एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

बगल में एक फ्रिज भी रखा हुआ है।

वहां पर दो मिस्त्री भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक ब्लैक है जिसका नाम लॉन्ड्री लैब है।

गेट के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें उसके बारे सब कुछ लिखा हुआ है।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

उसके बगल में दो पुतला भी रखा हुआ है।

यह एक रेड कलर का कार है।

यह एक होंडा का शोरूम है।

क्या एक दुकान दिखाई दे रहा है बड़ा सा काउंटर है।

जहां पर कई तरह तरह के साइकिल रखे हुए हैं न्यू ब्रांड साइकिल हैं।

यह एक मेडिकल सेंटर है।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

इसके पीछे पीला कलर का परदा लगाया गया है।

और नदी के साइड साइड में कई सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक आईसक्रीम का पार्लर है जहां पर अरुन कंपनी का आईसक्रीम मिलता है।

घर के बाहर में एक कर खड़ा है जो की ग्रे कलर का है।

यह एक पोखरा का चित्र है।

इसके अगल बगल में बहुत झांठ झांति हो गया है जो कि हर कलर का है।

उसके अगल बगल में कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

जो की हिरण वहां पर घास खा रहे हैं।

और वहां पर कई सारे कुर्सी भी दिखाई दे रहे हैं जो कि लकड़ी के बने हुए हैं।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

जहां पर कई सारे कपड़े रखे हुए हैं।

यह एक पब का तस्वीर है जिसका नाम सी_एस_बी है।

यह गार्डन में कई सारे आदमी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं।

यहां पर तीन गाड़ी भी दिखाई दे रहा है एक चार चक्का--

ऊपर में कई सारे लाइट भी लगा हुआ है और कई सारे बड़ा बड़ा ची--

यह एक ऑफिस का चित्र लग रहा है।